बिल्डिंग के बाहर एक पार्क बना हुआ है जिसमे बैठने के लिए एक बेंच भी लगी देख रही है।

पहाड़ पर बर्फ भी जमी हुई दिखाई दे रही है ऊपर नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

कुछ बिजली के खंबे भी लगे हुवे दिखाई दे रहे है आसपास बहुत सारी बिल्डिंगे भी बनी हुई दिख रही है।

बाहर कुछ गाड़िया भी खड़ी दिख रही है एक औरत एक बच्चे को लेकर बैठी हुई दिखाई दे रही है।

जहां मंदिर में एक मूर्ति बनि हुई है। पीछे की तरफ दरक्त के बड़े-बड़े से पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

बड़ा-बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जहा पेड़ के पास मे एक बड़ासा मकान भी बना हुआ है।

यहाँ सामने की तरफ एक बड़ा सा जंगल दिखाई दे रहा है।

एक लाइट सी जलती हुई देखाई दे रही--

यह सामने की और एक बडा सा जंगल दिखाई दे रहा है जहा जंगल मे--

यहा रोड के बहार एक बड़ा सा लंबा गेट लगा हुआ है। ऊपर की तरफ बॅनर दिखाई दे रहा--

तालाब दिखाई दे रहा है जहां तालाब में बाहर की तरफ एक गेट लगा हुआ है।

यहा सामने की तरफ एक रोड दीखाई दे रहा है। जहा रोड के पीछे की तरफ मकान बना हुआ है। मकान में दरक्त के दो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे है।